इसका सामने एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

और साइड साइड में घर छोटा छोटा सा बना के है।

हमें एक सुंदर सा स्टेडियम का जैसा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक शॉप दिखाई दे रहा है।

और इसका पीछे में बहुत बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

और एक फोटो भी दिखाई दे रहा है।

उनमें से एक बकेट दिखाई दे रहा है।

जिनमें एक वॉल क्लॉक भी दिखाई दे रहा है।

फिर से नीचे में बैठने के लिए एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

और उसका अंदर में एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

उसका अंदर बहुत सारा किताबें दिखाई दे रहा है।

मका अंदर में एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

सोफा का बगल में एक लाल रंग का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

प्रकाश बगल में एक सोलर पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।